बीच में खड़े होने से इन रिंग्स में से पानी निकलता है।

और ऊपर पाइप दिख रहे हैं सारे जिनके कॉर्नर पे एल_ई_डी बलब्स लगे हुए हैं सारे--

इंडिया का लोगो अह तिरंगा लगा हुआ है।

और साइड में कुछ लोग खड़े हैं जिनके पैर दिख रहे हैं सिर्फ।

एयरोनॉटिक्स ट्रां लिमिटेड एसोसीरीज डिविजनल लखनऊ का बोर्ड लगा हुआ लाइट जल रही इसमें।

एक रॉड में घड़ी लटकी हुई है जिसमें डेढ़ बज रहा है।

और बड़ी बड़ी मीनारें दिख रही हैं साइड में।

ऊपर स्क्रीन चल रही है। उसके ऊपर लिखा हुआ है मुंशी पुलिया जीरो फाइफ ।

और सामने बैरीकेड लगे हुए हैं छोटे छोटे।

ये यूनिवसिटी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय--

सब कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं यहां पे शॉपिंग करने के लिए।

गायनिस सिंस नाइंटिन फिफ्टी सिक्स लिखा हुआ है।

यू_पी पैंसठ बी_बी सेवन थ्री नाइन थ्री इस का नंबर है।

स्टूल वगैरा रखे है नीचे।

और बाहर की तरफ मेल के जूते लगे हुए हैं सारे।

शीशा लगा हुआ है उसपे लिखा हुआ है पुल ।

और उसके बैक साइड में ओरिजिनल पेड़ लगे हुए हैं।

ऊपर टाइगर बैठा हुआ है।

यह मस्जिद है शायद इसमें मीनारें दिख रही है ऊपर डिजाइन में बनी हुई।

फ्लावर से सब डेकोरेट हुआ है सजा हुआ है इस--

अंदर की तरफ है यहां पे टोकन लगा करके गेट ओपन होता है।

यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है चेयर पे कुछ पेपर लेकर के।

कुर्सियां लगी हैं बैठने के लिए।

मार्केट का फोटो है पीछे एक बोरी और क्रेट वगैरह रखे हुए हैं सब।

खम्बा लगा हुआ उसपे लाइटें जल रही हैं।

एक आदमी खड़ा है जिसकी सिर्फ शर्ट दिख रही है ग्रीन कलर की।

नीचे बैंगन रखे हुए हैं।

स्टूल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है एक दो नीचे खड़े हैं।

साइड क्रॉस बने हुए हैं दो विंडो जैसा कुछ है।

तार वगैरा दिख रहे जमीन में बिखरे हुए।

गाड़ी के ऊपर ग्रीन कलर का बॉक्स जैसा रखा हुआ है सामने करी लीफ का--

साइड में एक लड़का खड़ा हुआ है।

पीछे खूब सारी चेयर्स रखी हुई हैं।

एक सेट चक्का रखा हुआ है।

ऊपर एक बोड लगा हुआ है बोड के ऊपर ए_सी एक कैमरा लगा हुआ है।

लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ गमले टंगे हुए हैं जंजीर से।

और एक पन्नी में ब्लू कलर की कुछ सामान टेबल के ऊपर रखा हुआ--

साइड में दो चेयर दिख रही हैं राइट साइड में।

लेफ्ट साइड में एक जाल जैसा है।

वाटर कूलर एक दिख रहा है रेड कलर का रखा हुआ।

हर तरफ गुब्बारे लगे हुए हैं।

यहां राइट साइड में एक पार्क है।

लेफ्ट साइट में भी पेड़ वगैरह दिख रहे हैं लाइटें जल रही है हर तरफ।

यहां पे एक पार्क है।

एक आदमी बैठा हुआ है बीच में।

थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ।

एक यहां पे शोरूम है रेवलॉन का।